ये एक होटल है और इसमें बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हुई है।

यह एक जिम है और इसमें बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

और इसमें बहुत सारे ड्रम भी रखे हुए हैं और इसमें कुछ आदमी भी हैं।

और इसमें काउंटर भी लग रहे हैं।

और इसकी बहोत सजावट भी हो रही हे।

और बहुत सारे डिब्बे भी रखे हुए हैं बहुत सारे और औजार भी रखे हुए हैं।

और एक घर भी है। उसपे लोहे के किवाड़ लग रहे हैं।

और पत्थर भी आसपास नजर आ रहे हैं।

और इसमें बहुत सारे बैग --

और इसमें रेलिंग भी लगी हुई है।

और इसमें सीसा भी लग रहा है।

उसके अप्पर कुछ डिब्बे डाब्बे भी धरे हुए हैं।

और इसमें एक लोहे का जीना भी लग रहा है।

और इसमें बहुत सारे गुब्बारे भी रखे हुए हैं।

और हरे कलर के बेड भी लग रहे हैं।

यह एक गोदाम है इसमें बहोत सारे भी रखे हुए हैं।

और इसमें बहुत सारी लाइट भी लग रही है।

और इसमें काउंटर भी रखा हुआ है।